ये एक घर के ऊपर की छत को सीमेंट और बालू को मिक्स कर-कर डलवा रहे हैं।

यहाँ पर यह आदमी खड़ा हुआ है और इसके बगल में तीन सिलिंडर रखे --

यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा झूला लगा हुआ है।